सामने मुझे एक छोटी मशीन लगी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सामने एक वेयरहाउस नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने पटरी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे कुछ टेबल लगी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में मिट्टी की खुदाई होते दिखाई दे रही है।

और मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और मुझे कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

टेबल पर मुझे काफी सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर सामने एक सड़क दिखाई दे रही हैं।